यह फोटो एक खाने के आइटम की है जिसे टेबल पे सजा कर रखा गया है।

इस मॉल का नाम वी टू मॉल है यहां मेंस के प्रोडक्ट के अलावा छोटे बच्चो के भी प्रोडक्ट है।

यह फोटो में एक बड़ा-सा हॉल दिखाई दे रहा है जिसका कलर नीला है उसपे लइटिंग्स लगी हुई है और चार लोग एक साथ मिल कर बेडमिन्टन खेलते हुए नजर आ रहे है।

बैडमिंटन खेलना हमारे सेहत के लिए अच्छी बात है इससे अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है।